यहाँ हमें एक ए.टी.एम. नजर आ रहा है जिसका हरे रंग के बोर्ड पर नाम लिखा है ओरिएंटल बँक ऑफ़ कॉमर्स ।

यहाँ एक झरना दिख रहा है।

और एक लाल रंग की कुर्सी पे आगे रखी हुवी दिख रही है।

एक सड़क दिख रही है।

सड़क के इस पार एक मोर दिख रहा है जो की खड़ा हुआ है बहोत सुंदर दिख रहा है।

दुकान का शटर खुला हुआ दिख रहा है।

पीछे लाल रंग की एक कमरा दिख रहा है जिसकी दीवारें लाल रंग की नजर आ रही हैं।

आसपास और भी अलग-अलग बहोत सारे विषय की किताबें दिख रही है।

यहाँ एक बड़ी सी दुकान दिख रही है जिसपे दो शटर हैं बीच से भी एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पर।

एक बाइक भी यहाँ से जाते हुए दिख रही है।

गणेशजी की मूर्ति रखी है।

एक झंडा यहां दिख रहा है पीछे की ओर।

यहाँ पर दो बसें खड़ी हुई दिख रहीं हैं।

इस ओर नदी के बहोत सारे नावें खड़ी हुई दिख रही हैं कुछ नाव बंधी हुई नजर आ रही हैं।

ये कुछ लोग यहाँ से आते-जाते हुए दिख रहे हैं।

एक बड़ा सुंदर-सा बगीचा दिख रहा है बिच में खाली रास्ता है।

यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुवा नजर आ रहा है जिसने काले कपड़े पहने हैं।